किचेन कार्नर है।

माँ दुर्गा का यह उम फोटो बहुत ही प्रसिद्ध है दुर्गा पूजा में यह फोटो हर जगह लगता है।